जे. सी. बी. हे बालू हे।

घा पौधा हे घास हे फूल हे हाथी हे पेड़ हे।

गेट हे गेट में लिखे नीचे आदमी हे घर हे अउ दीवार हे बड़का हॉस्टल हे पेड़- पौधा हे।

अउ पेड़ हे पेड़ में लाइट हे रात हो गे हे बजा हे।

ओ बुक माड़े है अउ टाइल्स हे सोफा हे टेबल हे।